जिसमे पानी है और साइड में भी बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए है।

एक लोहे का गेट लगा हुआ है कुछ बल्लिय लगी हुई है।

यहां पर काफी बड़ा सा एक सामने को गेट दिखाई दे रहा है वाइट कलर का जोकि मंदिर जैसा लग रहा है।

यहाँ पर पिछे से एक बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्डिंग में काफी साडी खीडकिया --

यहाँ पर काफी बड काफी बड़ा तलब सा है जहा पर की पाणी भरा हुआ है कुछ झील सा नजर आ रहा है चारो तरफ से बौन्दरी हो रखी है और ये सामने को कुछ घर नजर आ रहे है।

दूर से दिखाई दे रहा है एक स्कूटर खड़ी है।

और एक आदमी बेठा हुआ है एक साइड में खेल रहा है कई सारे ग्रीन कलर के पतले पतले पाइप लगे हुए हैं ऊपर से झाल लगा हुआ है।

मोबाइल है मोबाइल चला रही है और पिछे एक --

हम्म टेम्पू दिखाई दे रहे है जो इस रोड पर चल रहे है दो टेम्पू है पीछे काफी सारी पब्लिक नज़र आरही है एक--

पाइप सी कट पट्टियां लगी हुई है और कुछ खिड़कियां दिख रही हैं।

बराबर में साइड में को कुछ उम्म एक बतख सी खड़ी है एक जे जिराफ बना हुआ है और यह--

ग्राउंड में एक बड़ा सा कमल का फूल में बिच में को है और पथरो से सजा हुआ है।

के उपर कुछ छिडकने का सामान कुछ बोतल में रखा हुआ है और एक खिड़की लगी हुई है सीसा लगा हुआ है।

एक एडजस्ट पेन लगा हुआ है एक दरवाज़ा लोहे का बरा बर में लगा हुआ है।

बराबर में एक शटर गेट लगा हुआ है कुछ तार फ़ले हुए है दो खम्बे है।

ये फ्लोर सा दिखाई पत्थर का दिखाई दे रहा है पत्थर रखे हुए एक मेद एक अंदर से ग्राउंड दिखाई देरा है चारो तरफ उसके।

पत्थर है पत्थरो के बीच में घास जमती नजर आ रही है छोटी छोटी सी.

आदमी खडे हुए है जिन्होंने किस वाइट कलर की कैप ओद रखी है लग रहा है ये कोई माजिद ही है जहा पर नमाज पड़ी जा रही है।

यहाँ पर काफी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड के बरा बर में ग्रिल्स लग जा रही है ग्रिल्स लग रही है।

और गेट सामने के बराबर में एक और इन --

और ये ऊपर के साइड को पांच जिन सीड़ियाँ बनी हुई है।

यहां पर ये मैहरून कलर के कुछ मीनारसी दिखाई दे रही है गोली में और यह बराबर में कोइ सीढ़ियां जा रहीं हैं।

उसमे भी पथर पड़ा हुआ है मंशेष जैसा दिखाई दे रहा है और काफी सारे पेड़ लगे हुए है।

और समाने को स्कूल लिखा हुआ है काफी बड़ी बिल्डिंग है स्कूल के बाहर एक ब्लैक कलर का--

बच्चे बाहर को खेल रहे हैं और दो गाड़ियां खड़ी हैं एक स्कूटी खड़ी है।

और ऊपर नीचे का नीचे घर नीचे मंदिर में घंटा टंगे हुए नज़र आरहे है।

और बरा बर में एक खिड़की और रखी है सामने कुछ तार और कुछ मीटर लगा हुआ है एक तार उपर को जा रहा है एक तार साइड में को जा रहा है।

कई सारी गाड़िया खड़ी हुई है फॉर विलर और एक स्कूटी खड़ी हुई है काफी सारे पेड़ है कुछ एक तार जा रहा है एक खम्बा रखा है।

यहाँ पर निचे को एक मार्केट सा लग रहा है और ऊपर काफी सारे तार सा जाल सा बना हुआ है तार जा रहे है।

यहाँ पर एक ये कुछ बहत सारे आदमी बैठे हुए है।

सामने दीबार पर एक घड़ी लगी हुई है घड़ी के नीचे एक कलेण्डर टेंगा हुआ है.

बना हुआ है सीसा लगा हुआ है काफी बड़ा शॉप है और ये दो आदमी दिखाई दे रहे है एक ओरत है।

एक आदमी ने अंगोछा डल रखा है गले में और वो अंदर को सामान ले कर जा रहा है।

ये तीन आदमी है जिन्होंने की कुर्सी हाथपकड़ रखे है बीच में को--

और ये एक पता नहीं एक आदमी ने ब्लैक कलर की नीचे टीशर्ट और पेंट पेहन रखी है एक ने--

नीचे एक ग्रीन कलर का फ्लोर वो बिछी हुई हैं मैट बिछी हुई है पीछे कुछ सामान रखा हुआ हैं।

यहाँ पर काफी सारी कुर्सियां पड़ी हुई है सामने को रेड कलर के परदे लगे हुए है।

ये एक काफी बड़ा पार्क है। पार्क के दोनों तरफ ला अ ऊ राउंड में कुछ --

सामने एक घड़ी और है कुछ पाइप फैले हुए है।

पेड़ दिखाई दे रहे है एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहे है छोटे छोटे को नीचे गोलाई में पेड़ लगे हुए है।

यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहा पर क्लीन पॉलिसी लिखा हुआ है और --

तीन चार आदमी सामने को काउंटर पर खड़े हुए है एक ब्लू कलर का ड्रम सा रखा हुआ है एक आदमी इधर से--

जाता हुए दिखाई दे रहे है एक इधर को पोस्टर लगा हुआ है।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

यहाँ पर ओरेंज और व्हाईट कलर के ग्रीन कलर के बैलून सामने को व्हाईट कलर के परदे पर लगे हुए हैं और कुछ लाइट लगी हुई है दो पंखे टंगे हुए हैं।

ये एक शॉप है जहां पर एक कोका कोला लिखा हुआ है वो फ्रिज है फ्रिज के ऊपर कोका कोला लिखा हुआ है।

नीचे के साइड एक स्कूटी खड़ी है एक टंकी राखी है।

और ये बराबर में एक बोर्ड लगा हुआ है एक बोर्ड और लगा हुआ है.

यहाँ पर एक शॉप है शॉप के बहार एक डस्टबिन रखा हुआ है।

ये काफी बड़ा एक पार्क है जहाँ के मरून कलर की --

यहाँ पर काफी बड़ा पार्क है जहाँ पर के बहत सारा लोग है।

ये छोटी सी दिवार है पथरो से सजी हुई है पथरो पे सजी हुई दिवार के बरा बर में कोई एक छोटी सी ग्रिल है।

लोहे के उसके ग्रिल के अंदर को एक काफी सारे फूल लगे हुए हैं।

और एक दोनों तरफ से पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ ग्रीन सा दिखाई दे रहा है कुछ रेड सा दिखाई दे रहा है।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

और ये टुटा हुआ कुछ सामान अस्त्र पड़ा है चेली वेली--

और संकर भगवान् और गोरा पार्वती का एक तर भूर मूर्ति लगी हुई है और दोनों तरफ--

पीले रंग का पत्रपाल सा नजर आ रहा है उसके ऊपर भी कुछ टंगा हुआ है और कु काफी सारी चेयरे पड़ी हुई है।

रेड कलर की और वहाँ पर कई सारे आदमी बैठे हुए है कुछ खा पी रहे है।